जमीन पर बहुत बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

जमीन के ऊपर पंखा रखा हुआ है।

बिल्डिंग के सामने जीने भी बने हुए दिखाई दे रहे हैं।